और फील्ड में बच्चे खेल रहे --

और ये किसी घूमने वाली जगह का फोटो है।

ये किसी एनिवर्सरी पार्टी के लिए--

नया दुकान ही ओपन हुआ है यहां पे कोई कस्टमर या दुकानदार नहीं है।

और यहां पे कोई है नहीं ये बनवाने के लिए लॉक करके खड़ी की गई है।

मनुआ फुल कुछ लिखा है और ये दुकान की फोटो है।

ये किसी स्कूटी सेल करने वाली हॉल का फोटो है और यहां पे तरह तरह की अह स्कूटी लगी हुई है।

छोटा ही दुकान है और इसमें साड़ियां सजाई गई --

और कोई है नहीं ये बरती ही ही जो ब्रत को रखी हैं।

ये तथागत बुद्ध की स्टैचू है।

और काउंटर के अ अंदर समान है मोबाइल है दिवार में भी में--

ये जो लकड़ी की बनी हुई है घर इसमें लैपटॉप रखा है ये दुकान ही होगा छोटा मोटा--